यह औधोगिक परीक्षरण संस्था आई.टी.आई. --

एक पिकअप कार है ।

बचपन में सिंद्धार्थ भी कहा जाता था।

बहोत सारे बच्चों बैठे हुए हैं ।

गाड़ी खरीद या खींच रहे हैं।

यह मस्जिद का पिक है।

इसमें पलंगें दिखाई दे रही है।

के बगल में कुर्सी लगा रखा है इसके बगल में ।

जो दिखने में बढ़िया लग रहा है।